मतलब पहाड़ के मतलब चट्टान के ऊपर भी पत्ते पेड़ लगे हुए हैं छोटे-छोटे बड़े सब --

और कुछ सुखी गीली घासे कुछ हरी हैं कुछ गोल्डन टाइप की घासे हो रही हैं इसमें--

और ये इसमें पहाड़ दिख रहा हैं बहुत सारे कुछ घर बने हुए दिख रहे हैं कुछ गड्ढे हैं इधर और जैसे खेत मे वो बने होते हैं बॉउंड्री हैं खेती के लिए वैसे बने हुए हैं कुछ घास--

और इधर कुछ दुकाने देख रही है भगवाने दिख रहे है और दो-तीन कलर कि दिख रही है पुराने टाइप का मंदिर बना हुआ है।